ओर को जाने वाला बरामदा है बरामदा बहुत ऊँचा और इसमें हर जगह लाइट लगी हुई हैं।

यहॉं पर शाम के टाइम आकर कुछ प्लेयर्स बास्केटबॉल खेलते हैं।

किसी लड़की के पास कलर है तो किसी के पास पेन ।

मालवीय पुस्तक केंद्र है और यहॉं पर बहोत सारी --